और एक आदमी नीचे झुक कर कुछ केक पैक करवा रहा है और दूसरा आदमी झुक कर केक दे रहा है।

उनके बाद रेड कलर की डस्टबिन भी रखी हुई है।

इस फोटो में हमें सामने ही जे_एल_एन स्कूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक स्कूटर भी खड़ा हुआ है और इस स्कूल पर पूरे पर लाल रंग हुआ है।

इस फोटो में मुझे सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पैंट पेहन रखी है और मछलियों के नीचे रेड कलर का कारपेट --

इस फोटो में मेरे को सामने ही चार पांच बैडमिंटन रखें हुये दिखाई दे रहे हैं।

बत्तख की आगे से चोंच हमे सफेद रंग की दिखाई दे रही है और पीछे से बत्तख काले रंग के है।

इस गाय का रंग काला वा सफेद रंग है इस--

ओर ऊपर हरे रंग की गुब्बारे है।

इस फोटो में मुझे काफी सारे फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें सामने दो तीन गुड्डे दिखाई दे रहे हैं जो कि बच्चों की खेलने के लिए हैं।

जो कि अलग अलग कलर की है। एक पिंक कलर की है एक ग्रीन कलर की है और इनपे काफी सारे पोस्टर अलग अलग चिपके हुए हैं।